दगड़ियों ईं पर न सबसे पहली हरी भरी घासा।

वै का पिछाड़ी न नीलू रंग कू एक गेट वै का पिछाड़ी सफ़ेद रंग की दिवाला।

अर वैका पिछाड़िन एक और माछू माछू तोना काटाणन लग्यां।

दगड़ियों ईं तस्वीर पर न सबसे पहली रोडअ ।

फिर ये का एंच भूरया कलर दीवारा फिर वे का एंच लाल कलर की छपर फिर एंच क्रॉस कु साइन पिछाड़ी बड़ु आसमान।

दगड़ियों सबसे पहले ना एक सफ़ेद कलर की दिवाला जै पर ना बहोत ही अच्छु मूर्ति फिर वैका नीसाण ना ढुंगु ।

फिर वेका बगलम न एक फट्टा कर लगायूं फट्टा का पिछाड़ी न एक जाली करा जाली का पिछड़ी बोहोत ही हर्युं-भर्युं जंगल।

पिंक रंग की सदरी पैनाई फिर बगलम ना वै का मिरर फिर न वै का नीसाण सीढी भीन इं तीनों पुतलों पर --

मैदान के पिछाड़ी एक लम्बू टावर भी ओर घनु जंगल भी वे का पिछाड़ी बहोत सारा डालान।

दगड़ियों ये न में फूल की दुकान करा लगणी जैपर सबसे अगाडि ना लोटस यानि कमल का फूला।